--आ-जालियां लगी हुई है सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है कांच की इमारत है और शिम --

एक क्षेत्र बना हुआ है छोटी सी मिट्टी की सड़क निकली हुई है कुछ अ सीढ़िया है सामने छतरी है और बिल्डिंग बनी हुई है।